और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है घुमने में।

लेकिन अभी मछली पकड़ने में देखिए कितने अच्छे से मछली पकड़ना यहाँ पर भी लोग बहुत उत्साह से मछली पकड़ रहे है और यहाँ पर मनोरंजन भी हो रहा है मछली पक --

ये ड्राइंग है देखने में कितना अच्छा लग रहा हैं। तरह-तरह का ड्राइंग हैं ये देखने मे बहुत अच्छे लग रहा हैं ये ड्राइंग कितना अच्छा लगता हैं और ये ड्राइंग --

रोड कितने अच्छे लग रहे है। देखने के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर भी लगे है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बिजली का भी व्यवस्था यहाँ पर गाड़ी लगते है और यही के रोड कितने अच्छे लग रहे है।

मिठाई भी मिलता है यह दुकान देखने में --

पानी भी लगे हुए है और एल.ई.डी. बल्ब भी मिलता है।

पार्क का पेंट किए जा रहे हैं।

और यह सबको अच्छा इसमें मुंह धोने का भी काम आता है।